और यहाँ पे इसके बगल में एक डी.ऐ.वी. पब्लिक स्कूल है जोकि गया शहर में इसका मैंन ब्रांच है और यह मैंन ब्रांच का ही देखने में लग रहा।

ताकि कुछ गिरे न तो कपड़ा पर ही गिरे इसका कपड़ा गन्दा ना हो और इसमें पर्दा भी लगा हुआ है और ऐ.सी. भी लगा हुआ है। ऊपर लाइट भी को लगा हुआ है। देखने में बहोत अच्छा सैलून लग रहा है।